इस फोटो में एक स्टेज दिख रहा है यहां पर रेड कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

इस फोटो में एक रोड दिख रहा है रोड के साइड में एक रेड कलर की साइकिल खड़ी है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।

इस फोटो में जमीन पर बहुत सारे कारपेट बिछाए हुए हैं और आसपास शादी के लिए डेकोरेट किया गया है।

एक कूलर भी दिख रहा है बहुत सारे लोग खड़े हैं।

उसके ऊपर एक टेंट जैसा बनाया हुआ है टेंट के ऊपर बाइक का एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर भी लगाया गया है।

स्टेज के पीछे एक बहुत बड़ा वाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे परदे से डेकोरेट किया गया है और बहुत सारे लाइटे दिख रही है।

सामने तीन चार कुर्सी लगा हुआ हैं जहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हैं।

बिल्डिंग के दीवार में बहुत सारे खिड़कियां और दरवाजे लगे हुए हैं बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे आदमी और औरतें खड़ी हुई हैं।

और कुछ कपड़ा टांगा हुआ भी है बीच में एक छोटा सा व्हाइट कलर का काउंटर भी दिख रहा है।

इस फोटो में एक कैफे दिख रहा हैं जिसके दीवार का कलर पिंक हैं और दीवार पर तीन चार खिड़की भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है जिसका दीवार का कलर सफेद है बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें बनी हुई है।

फोटो में एक चश्मे की दुकान दिख रही है इस दुकान का कलर काला और सफेद है।

सामने एक बोर्ड भी लिख के लगा हुआ है जिसमें व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक छोटा सा ढाबा दिख रहा है जिस का दीवार का कलर हरा है और छत का कलर वाइट है।

उसके सामने एक पीला कलर का कपड़ा पहने हुए एक बच्चा बैठा हुआ है।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

और बहुत सारे पर्दे भी लटके हुए हैं पीछे बहुत सारा पेड़ और पौधा भी दिख रहा है।

के नीचे छे सात आदमी खड़े हुए हैं।

दुकान के दीवार पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं। जहां पर जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

गार्डन के बाहर बहुत सारे बड़े बड़े घर दिख रहे हैं।

साइड में एक रेड कलर का ड्रॉवर बना हुआ है।

आस पास बहुत सारे पेड़ और पौधे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है इस बिल्डिंग का कलर ब्राउन है बिल्डिंग के नीचे एक बच्चा खरा हुआ है।